केक केक बहुत सुंदर सा दिल का हार्ट शेप बना हुआ है।

ये एक गार्डन है गार्डन में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं ये गार्डन है गार्डन में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।